यह जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये एक हॉस्पिटल की है आपको हॉस्पिटल के अंदर एक कमरा दिखाई दे रहा होगा इस कमरे में आपको कुछ ऑक्सीजन सिलिंडर्स दिखाई दे रहे होंगे जोकि तीन अलग -अलग --

और ये एक गवर्नमेंट स्कूल होता है जो गवर्नमेंट हॉस्टल होता है। सात साल के लिए छठी से बारहवीं।

और आपको सामने सीसे के अंदर बहौत सारे जो है पेस्ट्रीज और केक --

और सब दुकान में यूज़ होने वाला ये जो है बारकोड है जोकि पेमेंट के लिए अक्षर काम आ --

और मार्किट में कुछ आपको की दुकान दिखाई दे रही होगी एक तरफ प्लैटिनम --

आयरन और लोहे का जो स्टोर है।

जो तस्वीर में आपको शॉप दिखाई दे रही है ये एक हार्डवेयर की है और हार्डवेयर में जो आपको स्क्रूस --

तस्वीर मे एक जगह पे थोड़ा पानी भरा हुआ है खेत है और इसके साइड मे जो है दो नारियल के पेड़ उगे हुए है जोकि बहोत खूबसूरत लग रहे हैं।

पूल का नाम है महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोर।

और बस कुछ जमीन और ये समून --

वे इलेक्ट्रॉनिक का आइटम यहाँ रखे हुए है। सामने के तरफ आपको एक ब्रांड दिख हुए। जिसका एम्बेसडर हैं। ये लड़की जिसने एक टी शर्ट हाथ में लिया है वाशिंग मशीन ।

ये जो तस्वीर आपको नजर आई। ये एक स्कूल है। जोकि स्कूल का बरामदा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और --

और ऊपर एक छटर टिन लगी हुई है। दु छटर लगा हुआ है।

ये आपको साइडो में इनके जो है इलेक्ट्रिक वायर दिखाई दे रहे होंगे जो कि दो ट्रेनों के लिए होते है नीचे आपको पटरी और --